इस तस्वीर मे एक अशोक लेलँड का ऑटो दिखाई दे रहा है। उसके सामने एक व्यक्ति माल हाथ मे लिए हुवे--

और पिछे वेलकम टू द टाटा भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास कुछ खुरसिया भी डली हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर मे एक बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारे कबर्ड बने हुये है। जिसमे--